चित्र बने हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे मुझे एक जिम का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पे मुझे--

दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे है जो एक बहोत बड़ा-सा मस्जिद दिखाई दे रहा है जोकी हरे और वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

साइड पे मुझे एक पुराना सा घर टाइप का दिखाई दे रहा है जिसके दरवाजा मुझे ब्राउन --

यहाँ पे मुझे एक बहोत बड़ा-सा चर्च की बलून दिखाई दे रही है।

पीने के लिए एक घड़ा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।